और यह एक स्थान ऐसा होता है की जहाँ हम अगर चाहें तो खुली वातावरण में हम अपना समय व्यतीत करें तो हम लोग यहाँ आ के व्यतीत कर सकते हैं यह उसी का फोटो --